यहाँ सामने की और एक अ ट्रेन की पटरी दिखाई दे रही हैं जहाँ पर दो नीचे की और कुत्ते बैठे हुए हैं सामने की और एक व्यक्ति भी दिखाई दे रहा हैं।

यहाँ सामने की और एक बड़ी सी नदी दिखाई दे रही है जिसमे पीछे की और एक पहाड़ भी दिख रहा है पहाड़ की ओर बड़े बड़े पेड़े भी दिखाई दे रही है।

यहां सामने की और एक बहुत बड़ा हॉल दिखाई दे रहा है जिसमे अंदर की और बहुत सारा खाना रखा हुआ है अंदर की और कुर्सी भी दिखाई दे रही है सामने की और एक व्यक्ति भी दिख रहा है।

यहाँ सामने की और एक बड़ा-सा पहाड़ दिखाई दे रहा रहा है।

यहां सामने की और एक दुकान दिखाई दे रही है।